यह एक एरोप्लेन है और यह एरोप्लेन --

उसे फूलों से लाइटों से सजाया गया है जो की बोहोत ही खूबसूरत लग रहा है ।

यह एक म्यूजियम है।